यह ट्यूटोरियल इस बारे में है कि ब्लेंडर 259 में विंडो के प्रकार कैसे बदलें
यह स्क्रिप्ट देवेन्द्र कैरवान द्वारा अनुवादित है और आवाज यश वोरा द्वारा दी गई है
इस ट्यूटोरियल को देखने के बाद हम सीखेंगे कि ब्लेंडर इंटरफेस में किसी भी विंडो का आकार कैसे बदलें
भिन्न विंडो के मध्य टॉगल कैसे करें
विंडो को विभाजित और फिर एक साथ कैसे मिलायें
और किसी विंडो को मैक्सिमाइज करके पूर्ण स्क्रीन मोड में कैसे लाएँ
मैं मानता हूँ कि आप ब्लेंडर इंटरफेस के बुनियादी तत्वों के बारे में जानते हैं
यदि नहीं तो कृपया हमारे पिछले ट्यूटोरियल का अनुकरण करें
बेसिक डिस्क्रिप्शन ओएफ थे ब्लेंडर इंटरफेस
हम पहले ही विंडोज के विभिन्न प्रकार देख चुके हैं
जो ब्लेंडर इंटरफेस में मौजूद हैं
इन विंडोज का आकार बदला जा सकता है
आउटलाइनर विंडो के बायीं ओर पर कर्सर ले जाएँ
हम एक दो सिरों वाले ऐरो को देखते हैं
अब बायाँ क्लिक करें और माउस को ड्रैग करें
आउटलाइनर विंडो का आकार बदलता है जैसे ही स्थानांतरित होता है
अब माउस कर्सर को आउटलाइनर विंडो के सबसे नीचे वाले भाग पर ले जाएँ
फिर से हम एक दो सिरों वाले ऐरो को देखते हैं
अब बायाँ क्लिक करें और माउस को ड्रैग करें
आउटलाइनर विंडो का आकार बदलता है जैसे ही स्थानांतरित होता है
इस तरह से हम ब्लेंडर इंटरफेस में किसी भी विंडो का आकार बदल सकते हैं
अब देखते हैं कि ब्लेंडर इंटरफेस की विभिन्न विंडोज के मध्य टॉगल कैसे करें
3डी व्यू के बाएँ कोने पर जाएँ
यहाँ अप और डाउन ऐरो का बटन है जो वर्तमान संपादक प्रकार दर्शा रहा है
बटन पर बायाँ क्लिक करें
विभिन्न विंडो ऑप्शन्स के साथ एक मेन्यू खुलता है
यह एडिटर टाइप मेन्यू है
यह मेन्यू ब्लेंडर इंटरफेस में प्रत्येक विंडो के बायीं ओर पर मौजूद है
और विभिन्न विंडोज के मध्य टॉगल के लिए उपयोगित है
अपने माउस को मेन्यू ऑप्शन्स पर ले जाएँ
शार्टकट के लिए आप अपने कीबोर्ड पर अप और डाउन ऐरो का उपयोग कर सकते हैं
uvइमेज एडिटर पर बायाँ क्लिक करें
3डी व्यू uvइमेज एडिटर में परिवर्तित हो जाता है
फिस से एडिटर टाइप मेन्यू पर बायाँ क्लिक करें और 3डी व्यू चुनें
अब हम वापस 3डी व्यू पर हैं
अतः इस तरह से आप एडिटर टाइप मेन्यू का उपयोग करके विभिन्न विंडोज के मध्य टॉगल कर सकते हैं
डिफॉल्ट 3डी व्यू 4 भागों में विभाजित हो सकता है
यहाँ 3डी व्यू को विभाजित करने के लिए दो तरीके हैं
पहले एडिटर टाइप मेन्यू के आगे 3डी व्यू के नीचे बाएँ कोने पर व्यू पर बायाँ क्लिक करें
सबसे ऊपर से दूसरा ऑप्शन चुनें जो टॉगल क्वाड viewहै
शार्टकट के लिए Ctrl Alt एएमपी क्यू को दबाएँ
3डी व्यू 4 विभिन्न व्यू में विभाजित होता है
टॉप व्यू फ्रंट व्यू राइट व्यू और कैमेरा व्यू
आप इसे बहुत उपयोगी पायेंगे जब ब्लेंडर में मॉडलिंग और एनिमेट करेंगे
क्वाड व्यू को अक्षम करने के लिए Ctrl Alt एएमपी क्यू दबाएँ
स्पेस बार को दबाएँ और सर्च क्षेत्र में Toggleटाइप करें
सूची से टॉगल क्वाड व्यू ऑप्शन चुनें
यह क्वाड व्यू को सक्षम बनाने के लिए दूसरी पद्धति है
क्वाड व्यू को फिर से अक्षम करने के लिए Ctrl Alt एएमपी क्यू दबाएँ
हम वापस ब्लेंडर के डिफॉल्ट कैमेरा व्यू पर हैं
जो डिफॉल्ट रूप से ब्लेंडर इंटरफेस में मौजूद हैं उन पाँच विभिन्न विंडोज के अलावा आप क्षेत्र को विभाजित करके ब्लेंडर इंटरफेस पर नई विंडोज भी जोड़ सकते हैं
फिर से यहाँ इसको करने के दो तरीके हैं
मैं इसे आउटलाइनर विंडो में प्रदर्शित करता हूँ
अपने माउस कर्सर को आउटलाइनर विंडो के तल के बाएँ कोने पर तीन तिरछी लाइन्स पर ले जाएँ प्लस चिन्ह प्रदर्शित होने तक
बायाँ क्लिक पकड़कर रखें और अपने माउस को दायीं ओर ड्रैग करें
आउटलाइनर विंडो अब दो नये पैनल्स में विभाजित होता है
प्रत्येक नये पैनल में इसका खुद का टूल्स का सेट है
वापस दो नये पैनल्स को एक साथ जोड़ने के लिए हम समान पद्धति का उपयोग करते हैं
दायाँ पैनल को वापस बाएँ में जोड़ने की आवश्यकता है
अपने माउस कर्सर को दाएँ आउटलाइनर पैनल के तल के बाएँ कोने पर तीन तिरछी लाइन्स पर ले जाएँ प्लस चिन्ह प्रदर्शित होने तक
बायाँ क्लिक पकड़कर रखें और अपने माउस को बाएँ पैनल की ओर ड्रैग करें
पैनल छायांकित है और एक स्पष्ट ऐरो चिन्ह इस पर प्रदर्शित होता है
बायाँ क्लिक छोड़ दें
दो विंडो जुड़ गई हैं
अब विंडो क्षेत्र को विभाजित करने के लिए दूसरे तरीके को देखते हैं
पहले हम आउटलाइनर विंडो को क्षैतिजिक विभाजित करेंगे
अपने माउस कर्सर को आउटलाइनर विंडो के बाएँ भाग पर ले जाएँ दो सिरों वाले ऐरो के प्रदर्शित होने तक
ऐरो चिन्ह पर दायाँ क्लिक करें
स्प्लिट एआरईए पर बायाँ क्लिक करें
अपने माउस को आउटलाइनर विंडो के मध्य में ड्रैग करें
दो सिरों वाले ऐरो के साथ एक क्षैतिज लाइन प्रदर्शित होती है
स्थिति को अवरोध करने के लिए बायाँ क्लिक करें
आउटलाइनर विंडो अब दो क्षैतिज पैनल्स में विभाजित हो गई है
पहले की तरह ही प्रत्येक पैनल्स में इसके खुद के टूल्स के सेट हैं
अब इसी तरह से नये पैनल्स को वापस जोड़ते हैं
अपने माउस कर्सर को दो नये पैनल्स के मध्य क्षैतिज भाग पर ले जाएँ दो सिरों वाले ऐरो के प्रदर्शित होने तक
दायाँ क्लिक करें और जोइन एआरईए चुनें
अपने माउस को किसी भी एक पैनल ऊपर या नीचे पर ले जाएँ
मैं नीचे वाला पैनल चुन रहा हूँ
चुनित पैनल छायांकित है और एक स्पष्ट ऐरो चिन्ह इस पर प्रदर्शित होता है
छायांकित पैनल पर बायाँ क्लिक करें
दो पैनल्स वापस एक साथ जुड़ गये हैं
अब आउटलाइनर विंडो को लंबवत विभाजित करने की कोशिश करें और फिर से नये पैनल्स को वापस एक साथ जोड़ें
आउटलाइनर विंडो के तल पर अपने माउस कर्सर ले जाएँ दोहरे सिर वाले ऐरो के प्रदर्शित होने तक
ऐरो चिन्ह पर क्लिक करें
स्प्लिट areaपर बायाँ क्लिक करें
अपने माउस को आउटलाइनर विंडो के बीच में ड्रैग करें
दोहरे सिर वाले ऐरो के साथ एक लंबवत लाइन दिखती है
स्थिति को स्थिर रखने के लिए बायाँ क्लिक करें
आउटलाइनर विंडो अब दो नये लंबवत पैनल्स में विभाजित हो गई है
अपने माउस कर्सर को दो नये पैनल्स के मध्य लंबवत भाग पर ले जाएँ दोहरे सिर वाला ऐरो प्रदर्शित होने तक
दायाँ क्लिक करें और जोइन एआरईए चुनें
अपने माउस को बाएँ से दाएँ किसी एक पैनल पर ले जाएँ
मैं दायाँ पैनल चुन रहा हूँ
चुनिक पैनल छायांकित है और इस पर एक स्पष्ट ऐरो चिन्ह प्रदर्शित है
छायांकित पैनल पर बायाँ क्लिक करें
दो पैनल्स वापस एक साथ जुड़ गए हैं
अब देखते हैं कि हम प्रोपर्टिज विंडो में विभिन्न पैनल्स की स्थिति फिर से व्यवस्थित कैसे कर सकते हैं
उदाहरणस्वरूप हम लेयर्स पैनल को रेंडर पैनल के सबसे ऊपरी भाग पर चाहते हैं
माउस कर्सर को लेयर्स पैनल के सबसे ऊपरी दाएँ कोने पर तीन तिरछी लाइन्स पर ले जाएँ
बायाँ क्लिक दबाएँ और पकड़कर रखें और अपने माउस को ऊपर की ओर ड्रैग करें
लेयर्स पैनल रेंडर पैनल के ऊपरी भाग पर स्थानांतरित होता है
अब देखते हैं कि ब्लेंडर में किसी विशेष विंडो को मैक्सिमाइज या पूर्ण स्क्रीन मोड में कैसे करें
अपने माउस कर्सर को किसी भी विंडो पर ले जाएँ
मैं 3डी व्यू चुन रहा हूँ
अपने कीबोर्ड पर Ctrl एएमपी यूपी अरो बटन दबाएँ
3डी व्यू अब पूर्ण स्क्रीन मोड में मैक्सिमाइज हो गया है
पूर्ण स्क्रीन मोड से बाहर आने के लिए अपने कीबोर्ड पर Ctrl एएमपी डाउन अरो की दबाएँ
हम वापस ब्लेंडर के डिफॉल्ट व्यू में आ गये हैं
यह किसी भी विंडो के लिए किया जा सकता है
अतः इस तरह से हम ब्लेंडर में किसी भी विंडो का आकार बदल सकते हैं भिन्न विंडोज के मध्य टॉगल कर सकते हैं विंडोज को विभाजित और फिर से एक साथ जोड़ सकते हैं
अब एक नई फाइल बनाएँ और क्वाड व्यू में 3डी व्यू को टॉगल करने की कोशिश करें
आउटलाइनर विंडो को विभाजित करें और वापस नये पैनल्स को जोड़ें
प्रोपर्टिज विंडो में आउटपुट पैनल को रेंडर पैनल के ऊपरी भाग पर ले जाएँ
और 3डी व्यू को पूर्ण स्क्रीन मोड में मैक्सिमाइज करें
यह प्रोजेक्ट भारत सरकार के एमएचआरडी के आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है
इस पर अधिक जानकारी इन वेबसाइट्स पर उबलब्ध है
oscariitbacइन और spoken tutorialorgnmeict इंट्रो
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट स्पोकन ट्यूटोरियल का उपयोग करके कार्यशालाएँ भी चलाता है
जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं उनको प्रमाण पत्र भी देते हैं
अधिक जानकारी के लिए कृपया इस ई मेल एड्रेस पर सम्पर्क करें sptutemailgmailcom हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद